एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरे घास जमे हुए है।

एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरे घास जमा है और बहुत सारे कार और स्कॉर्पियो ऑटो खड़ी हुई है एक झोपड़ी है अगल बगल हरे पेड़ पौधे है।

लाइट लगी हुई है अगल बगल दीवारे है अलमारी रखे है और कवट भी लगे है।